कमरे में कुछ पंखे लगे हुए हैं कमरे का कलर सफ़ेद है।

यूनिफार्म की शॉप है।

इस पर कपड़े का काम किया जाता है।

और एक फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज के कार्नर पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक कमरा हैं। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी मोटर्स रखी हैं। मशीनें रखी हुई हैं।